जो लग रहा है किसका जन्मदिन है जन्मदिन की पार्टी मनाई जा रही है और चारों तरफ बेलो से सजाया गए हैं।

और घास भी नजर आ रहे है और चारों तरफ बिल्डिंग ही दिखाई दे रहे है|

और ये फोटो क्लिक कर रही यहां पे।